दिखाई दे रहा है।

यह एक जंगल दिखाई दे रहा है जंगल मे ढेर सारे पेड़ दिखाई दे रहे है छोटे पौधे दिखाई दे रहा है आसमान यहाँ वाइट दिखाई दे रहा है।

चेक पत्ती दिखाई दे रही जो कि रेड कलर की दिखाई दे रहा है आसमान छोटा व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है और --

यहाँ एक येलो कलर का पेम्फलेट दिखाई दे रहा है अ पेड़ दिखाई दे रहे है।